एक फोटो खींचते हुए नजर आ रहा है और दूसरा है जो कि शॉप का--

ये एक मंदिर की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर मंदिर में बहोत ही खूबसूरत डेकोरेशन की गई है।

मालाओं से भगवान की भी डेकोरेशन की गई नजर आ रही है।

यहां पर नीले कलर के बोर्ड पे--

जहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने ऊपर टोपी पहन रखी है और ये एक लाल कलर के --

इस बल खिड़की नंबर के अनुसार बनी हुई हैं और यही पीछे टेबल पर भी तीन चार व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर कुछ लडकियां बैठी हुई है।

एक काउंटर लगा हुआ है जहां पर एक व्यक्ति--

ये एक मंदिर श्री कल्की जी के बाहर का दरवाजा दिख रहा है यहां पर उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक फुहारा लगा हुआ है जो की बीच में लगा हुआ है और बिल्डिंगों पर लाइटों से डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है।

उस पहाड़ के नीचे कोई डिज़ाइन बनी हुई है जहां पर एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नोटबुक्स रखी हुई दिखाई दे रही है और भी यहां बहोत आइटम रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नजर आ रहे है और यहां पर कु--